खून देते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर इस महिला नर्स ने व्हाइट कलर का डॉक्टर एप्रन पहेना हुआ हैं।

हुआ है। इस बावड़ी में पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है।

हमें एक हार्डवेयर शॉप दिखाई दे रहा है।

इन टेबल के आसपास कुर्सियां रखी हुई दिख रही हैं।

यहां पर बहुत सारी प्लाईज भी रखी हुई हैं यहां पर कूलर --

लगी हुई है और बाहर की तरफ हमें नारियल के पेड़ लाइन से लगे हुए दिख--

नीचे की तरफ जाने का एक रास्ता--

बहोत ही सुंदर सुंदर लैंप लाइट लगाई गई है यहां पर तीन चार कुर्सियां लगी हैं जिस पर--

इस इमेज में हमें एक फिश मार्केट नजर आ रहा है और यहां पर बहोत सारे लोग--

बाहर की तरफ दो लोग हमें जाते दिखाई दे रहे हैं और कुछ लो--

हमें अलग अलग तरह की सब्जियां रखी हुई दिखाई दे रही हैं जैसे कि--

नाइट लैम्पस ऊपर की तरफ लगे हुए दिख रहे हैं।

यहां पर तीन पैरेट बैठे हुए है।

पूजा का कलश भी रखा हुआ है।

एक कपल का फोटो बना है और हार फुल की मालाएं सजी हुई हैं।

और तीन लोग अलग अलग चेयर पर बैठ कर गिटार बजा रहे हैं।

और यहां अंदर हमें पूजा होती हुई नज़र आ रही है जिसमें की भगवान की फोटो पर हार--

पड़ी हुई है और एक कलश भी रखा हुआ है यहां एक कुर्सी भी लगी हुई है।

इस शॉप पर ऊपर की तरफ एक बोर्ड लगा है जिस पर साधना लिखा हुआ नजर--

और यहां पर पार्टी होते हुए नजर आ रही है यहां पर बहोत सारे लोग--

एच_डी_एफ_सी बैंक का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा।